ऊपर नीला आसमान है आगे कुछ और पेड़ खड़े हुए हैं साइड में पेड़ों के चारों ओर बाउंड्रीयां बना रखी है ईंटों से।

बहुत सारे सरिए एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं कर्मचारियों ने हेलमेट लगा रखे हैं जो संतरी रंग के हैं।

रंगीन टेंट लगा रखा है नीचे जो बाउंड्री भी की हुई है लोहे की तारों से--